घर है इसके पड़ोस में एक टैंकर लगा हुआ है नीले कलर का खड़ा हुआ--

यहां पे बहोत सारी कुर्सियां वगैरा पड़ी हुई है और यहां पे चांद छुपा हुआ है।

कुछ भोपे रखे हुए हैं और यहां पे एक इंजन रखा हुआ है।

एक पाइप पड़ी हुई है जो पानी उसे छिरका आता है।

उसमें बच्चे छपे हुए हैं और चारों ओर से बाउंड्री हैं।

उसके बालों में क्लीपे लगी हुई है और यहां पे दो तीन चेयर पड़ी हुई हैं।

यहां पे बहोत सारे लोग भी दिखाई पड रहे हैं और यहां पे बहुत सारे लोग बैठे भी --

और नीचे ये लगा हुआ है इससे ये अंदर गेहूं मूनते हुए चलता है।

यहां पे सब मोबाइल के कवर वगैरा मिलते हैं और मोबाइल की रिपेयरिंग भी होती है।

ऊपर बहुत सा बड़ा पोस्टर लगा हुआ है वो जल रहा है।

यहां पे आगे दो चैनल लगे हुए हैं जो लोहे के लगे हुए हैं और खंबें वगैरे भी लगे हुए --

यहां पे बहुत सारे लोग हैं जो प्रोजेक्ट का कार्य कर रहे हैं।

इसमें हरे हरे छोटे छोटे से पेड़ लगे हुए हैं और सुज उगता हुआ दिखाई पड़ रहा है।

बहोत सारे छोटे बड़े पेड़ वगैरा लगे हुए हैं यहां पे एक बड़ा सा गार्डन बना हुआ है।